बच्चो ने अह एक बच्चे अह दो बच्चे और एक दूसरे की टांग पे खड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे नीचे भी हैं ।

यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं और एक ने ग्रीन कलर का साड़ी एक ने ऑरेंज कलर का एक ने भी ऑरेंज और ब्लू कलर का एक ने स्काई ब्लू का पीछे में महादेव की फोटो बनी हुई है सबने अपना-अपना हाथ दिखया है वहाँ पे एक नाग है।